ये मेरे को स्टेज दिख रहे हैं पूरे बच्चे लोग बैठे हैं बड़े लोग पीछे खड़े हैं बच्चों के हाथों में कुछ दिख रहा है यहां पे यहां सीढ़ी दिख रही है।

मेरेको एक कोई भी कारखान दिख रहा है यहाँ पे बोहोत सारी मशीने रखी है वोह अंकल एक खड़े हैं यहाँ स्विचेस लगे है यहाँ पे ब्लू कलर रेड चूसेस लगे हैं। यहाँ पे रेड सा कुछ दिख रहा है मेरे को यहाँ पे बोहत बड़े बड़े मशीन यहाँ पे --

मेरे को यहां एक डैम दिख रहे हैं बहुत तेज जगह पानी भरा है वहां पे भी एक चट्टान दिख रही है वहां पर बहुत सारे टावर लगे हैं।